यह फलों का दुकान लग रहा है जैसे ऊपर अ अ अ लिखा हुआ है की फ्रूट एण्ड वेजीटेबल्स शॉप है यहाँ सब्जी भी होगी।

गार्डन एरिया भी दिख रहा है जहां पे बहुत हरियाली हैं| वहाँ साइड में सब आसमान भी नीला है| ये दृश्य बहुत प्यारा है।

यहाँ पर दो केक्स और उस पे लिखा लगा है हैप्पी बर्थडे और दूसरे में लिखा गया है हैप्पी एनिवर्सरी और वो क्या कैलेंडर का फोटो डालके उसमे जो डेट्स है वो उसमे हार्ट्स डाले गये --

ये बेकरी का दृश्य है यहाँ अंदर अ थोड़े केक्स दिख रहे हैं और यहां पे जो केक्स दिख रहे शायद वो --

अ इनका ही ऐड्वर्टाइज़्मन्ट बहुत से सेक्शनस में है और एस.बी.आई बैंक बहुत ही अच्छे और ट्रस्टेड बैंक है।